यह तस्वीर एक कमरे की है जो कि संभवत एक कक्षा की है।

और इस द्वार के ऊपर एक साइन बोर्ड है जिस पर स्टार गार्डन लिखा हुआ है।

तस्वीर में पीले नीले और लाल और हरे रंग प्रमुख हैं।

प्रवेश द्वार के सामने एक छोटी सी बेदी या मंच है जिस पर एक मूर्ति रखी हुई--

जीन पर एक नियंत्रण पैनल है इस पर कई बटन है।

मंच पर रोशनी लगी हुई है और एक कलाकार प्रदर्शन कर रहा है।

पीछे की ओर हरे रंग का एक गेट है और बाहर की ओर हरे-हरे पेड़ लगे हुए हैं।